बाह ये पत्थर का घर है सब बाह क्या बात है बहोत अच्छा है बहोत सुन्दर लग रहा है कितना मस्त लग रहा है यार देख सकते हो आपलोग भी यहाँ का पहाड़ी एरिया है न बहोत अच्छा लग रहा है।

एरे माई गोड कितना भीड़ है काफी देखो न कितना सुन्दर से सजाया हुआ है।

हां यार मुझे तो खाना है आइसक्रीम खाएंगे बहुत अच्छा आइसक्रीम हमको लगता है बहुत पसंद है आइसक्रीम हमको ये आइसक्रीम --